पीछे बहोत सारे गुब्बारे लगे--

बैंक है तुरंत गोल्ड लोन --

लाल नीले ट्रैक्टर खड़े हैं और बहुत ही प्यारे।

बहोत सारे लोग बैठे हैं और पानी की बोतल--

जो दी सिटी कैफे के पास खड़ा है।

जो पार्किंग में खड़ी है यहां बहोत ज्यादा साफ सफाई--

कुरकुरे और भी फास्ट फूड का समान--

एक लड़का बैठा है इसके पीछे बड़ा सा फुहारा है।

बड़े-बड़े पोल है और मशीन का काम चलता है।